कई सारे पेड़ पौधे भी मौजूद हैं।

यह एक बेकरी शॉप है जिस बेकरी शॉप का नाम त्रिशूल बेकरीज --

जैसा कि आप सभी लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि--

नीली पैंट पहन कर और नीली जैकेट पहन कर और काला चश्मा लगाकर एक बंदा खड़ा है जोकि--

आप लोगों को भी दवाइयों की जरूरत है।

कई अलग अलग तरह के मसाले रखे गए हैं बेचने के लिए।

इस बैक की दीवारे लाल रंग की है।

बैठ सक कर काम कर सकते हैं।

अगर आप लोगो को ऐसी चीज पसंद है तो--

जैसा कि आप सभी लोग इस ईमेज में देख पा रहे--

जिसको देखकर अच्छों अच्छों के मुंह से पानी निकल रहा होगा।